एहा गैरेज ऐ जय मां दुर्गा वार का साप लिखाय हे मोबाइल नंबर हे हरा कलर का गेट हे अन्दर मा आइल वाइल कुर्सी--

लोहा के गेट लगे हे जालि लगे हे।

एहा बहुत बड़े घर हे हाता घेराय हे बाइक हे।

लाइट है बहुत सारा खंबा है पटरी है घास है।

लाइट लगे हे पोस्टर लगे हे ऊपर मा जाली लगे हे पेड़ हे।

ऐ हा रेलवे स्टेशन ऐ ईहा ला आदमी बहोत झन हे ईहा सफर करथे पेड़ है पौधे हे लो पटरी हे घर हे ट्रेन हे।

पोस्टर मा लिखाय हे लल लाल कलर मा पोताय हे सफेद कलर मा पोताय हे अउ पोस्टर लगे हे।

पेट्रोल टंकी ऐ बाहर मा गाड़ी पेट्रोल भरवात हे आदमी हे बाइक हे ।